एक छोटा सा अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है जिसमे एक व्यक्ति अंदर की तरफ --

बोर्ड किसी डेयरी का है डेयरी का नाम मदर डेयरी है।

एक स्टेज बनाया गया है जो पीले और भूरे कलर के --

मंदिर में बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है।

सभी वर्कर ने । रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है इनके सुपरवाइजर ग्रीन कलर --

मैजिक खड़ा हुआ है जिस पर एक रेड कलर की मशीन रखी हुई है।